एक टाइल्स भी दिख रहा है और उसके ऊपर फैन लगे हैं और कुछ लाइट्स भी लगे हैं।

यहां पर एक बड़ा सा खंबा भी दिख रहा है और गार्डन के बॉर्डर पर बॉर्डर भी हमें दिख रही है।

दीवारों का कलर पिंक है और बेडशीट का कलर ग्रे है।

वहां पर एक पोस्टर है जिस पे नाम लिखा है गार्ग एंड क्लासेस --

यहां पर हमें एक बड़ा सा गार्डन दिख रहा है गार्डन में कुछ बच्चे खड़े हुए दिख रहे हैं और साइड में हमें --

और एक बड़ा सा विंडो भी दिख रही है और डोर भी डोर के बाजू में एक चप्पल छोड़ी हुई दिख रही है।

और यहां सर हमें एक बड़ा सा होल भी नजर आ रहा है।

यहां पर सभी ने ब्लैक कलर खे गद्दे यूज किए हुए दिख रहे हैं।

और इस भीड़ में कुछ आदमी है और कुछ औरतें भी ठहरी हुई दिख रही है।

इस पिक्चर में हमें एक यात्रा दिख रही है यहां पर लोगों की बहुत भीड़ भी नजर आ रही है।

और बादल भी नजर आ रहे हैं और कुछ सूखी हुई झाड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पे हमें एक बैठने के लिए टेबल दिखा है और सीमित का टेबल बनाए हुए भी दिख रहा है।

ये एक समंदर का हमें नजारा दिख रहा है समंदर के ऊपर बोहोत से पंछियों के घूमते हुए दिख रहे हैं।

ऑफिस है और वॉल का कलर स्किन कलर जैसा है हमें और एक स्विच बोर्ड भी --